और कुर्सी के साइड में भी कोई छोटे स्टूल रखे हुए उसके ऊपर--

इस चित्र में सामने हमे एक काले रंग की प्लेट में--

कुछ पर्दे जैसा बांधा गया है और कार के साइड में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

इस चित्र में सामने हमें एक बड़ा हॉल दिख रहा है और उस हॉल में सामने टेबल रखी है रिसेप्शन है।

सैलून दिखाया गया जिसमें दो तीन लड़के बैठे हुए हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक लड़का बैठा है जिनके स सलून वाला बाल काट रहा है और--

एक दरवाजा खुला है और ऊपर छत पे दो पंखे लगे हैं।